यह बस स्टैंड का सीन है उसमें कुछ बस दिखेंगे और ऊपर से तीन ऐसा--

और कार के अंदर बैठ के ये फोटो कैप्चर किया जा रहा है।